इसके ग्राउंड में एक कार खड़ी हुई है मेन गेट दिखाई दे रहा है एक बाइक भी खड़ी है।

यहां पर मेन रोड दिखाई दे रही है।

एक आदमी एक्टिवा चला रहा है जिसने हेलमेट पहना हुआ है।

हरे-हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और बच्चों के लिए फिसल पट्टी लगी हुई है जिसका रंग लाल और पीला है।

जिसके पास एक बच्चा है आस पास में गाड़ियां मोटरसाइकिल खड़ी हुई है स्कूटी भी है पास में कूलर लगा हुआ है।

श्री महंत हरिहर दास उच्च विद्यालय दसवीं प्ल प्लस टू टेन प्लस टू है जिसका बील्डिंग का रंग है।

यह एक दुकान है जिसका नाम मां चंचला ड्राई फ्रूट है इस पर इसके कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं।

और यह एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा है सामने एक ब्लू कल ब्लू कलर का सोफा भी लगा हुआ है।

दो आदमीन बैठे हुए हैं जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और यहां पर कुर्सियां रखी हुई है।

फोटो हैं जिसमें ट्रे में कुछ जलेबियां दिखाई गईं हैं।

जिसके चारों तरफ लाइटें जली हुईं हैं लाइटों से येह रंग नीला दिखाई दे रहा हैं।

इस पर इसके फोन नंबर भी दिए हुए हैं।